आपको दांतों का अस्पताल दिखाई दे रहा--

इस तस्वीर में भगत--

के निशान पर लगा हुआ है।

आपको मैप सुल्तानपुर नेशनल पार्क दिखाई दे रहा है।

कटिंग कर रहे है।

वेह नदी में बोट चला--

दे रहे हैं यह लो--

रही है सड़क के--